इस चित्र में एक रूम नजर आ रही है जिस रूम के अंदर एक बेड लगी हुई है और उसपे ब्लू कलर की चादर भी बिछी हुई नजर आ रही है ।

इस रूम के अंदर जाने का एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है।

इस डैम के ऊपर जाने के लिए एक रेलिंग भी दिखाई दे रही है और उस पानी का कलर ब्राउन है।

यहां पे हरे कलर कि एक मैट भी बिछी हुई नजर आ रही है।

यहां पे श्री महंत हरिहरदास उच्च विद्यालय टेन टू ट्वेल्व लिखा हुआ नजर आ रहा है।

जोकि चेयर पर बैठ कर अपना वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उसी गार्डन एरिया के लॉन में छोटे छोटे घास और पत्ते भी दिखाई दे रहे--

में बहोत सारे लेज कुरकुरे और खाने पीने की बहोत सारी चीजें रखी हुई नजर आ रही--

जिन खिड़कियों का कलर ऑरेंज ब्राउन नजर आ रहा है।

इस दृश्य में एक घर नजर आ रहा है जिस घर के बाहर बहुत सारी महिलाएं खड़ी हुई हैं।

यह दृश्य एक रेस्टोरेंट का नजर आ रही है जिस रेस्टोरेंट में टेबल और चेयर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

उस शॉप के बाहर एक एल्वेस्टर भी लगाई हुई है।

लगी हुई अलबेस्टर में बहोत सारी चीजे टंगी हुई नजर आ रही है जैसे की स्कूल बैग बॉल्स --

उस मंदिर के बाहर का दरवाजा भी बंद है और उसके ऊपर दो ताले लगे हुए हैं।

यह दृश्य एक डेंटिस्ट के घर के बाहर का है।

जिसके बाहर बाल दाढ़ी स्पा एंड सैलून लिखा हुआ नजर आ रहा है।

चार लोगों ने एक चादर से ढके हुए डंडे को पकड़ रखा है जिसके अन्दर एक बूढ़े व्यक्ति खड़े नजर आ रहे हैं।

एक बच्चा भी दिखाई दे रहा है जिसने अपने सर पर पगड़ी पहन रखी है और येलो कलर की शर्ट और पर्पल कलर का कोट भी पहन रखा है।

एक और ग्रीन कलर की चेयर नजर आ रही है।